यह देखने से कार का रिपेरिंग सेण्टर लग रहा है।

जहाँ पर चार से पाँच आदमी ऊपर की तरफ कुछ देख रहे है।

जहाँ पर कई किसम की गाड़ियां खड़ी है बिच मे--

यह शोरूम काम मेंस कलेक्शंस दिखाई पड़ रहा है।

जिस मे शर्ट टीशर्ट और कुछ पैन्ट्स दिखाई पड़ रहे है ऊपर लाइट है।

यह देखने से एक बौद्ध मंदिर दिखाई पड़ रहा है जिस मे बुद्ध की तस्वीर भी है।

नीचे की तरफ गिर रहा है नीचे की तरफ ढेर सारे हरे-भरे पौधे है।

जिस में से घासों को हटा कर आर डिज़ाइन किया गया है।

यहाँ की तस्वीर मे पोस्टर पर हैयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सेलून लिखा हुआ है यहाँ पर--

सामने की तस्वीर मे एक कोचिंग सेन्टर को दिखाई गया है जिस का नाम द हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट इंग्लिश है इसके सामने ढेर सारे--